दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में।

कुछ कैमरे पर कर रहे है कुछ कापी किताब है।

यह एक कोई टायर पंचर वाली दुकान है।